और साइड में बोर्ड सा लगा है बुक पॉइंट और एक लड़की खड़ी है रेलिंग के पास एक लड़का रेलिंग में से --

क्योंकि इसने हाथ में शूज पहने हुए हैं लोगों को ऐसा लगेगा जैसे ये --

आप जैसा कि देख पा रहे हैं।

कुर्सी टेबल भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हुए--

योगा मैट के ऊपर बच्चे योगा कर रहें--

हल्के नीले आसमानी कलर की स्टेच्यू है ग्रे कलर की और उसके पीछे के को --

कोई हॉस्पिटल जैसा भी लग रहा है जहां पर मरीज के लिए तरह तरह की अ व्यवस्था है।

जहां पर इतना बड़ा कांच हैं।

यहां पर फ्री में हवा भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है।

की जानकारी हमे होनी चाहिए पास मे ए_टी_म है वहां पे ट्रांजेक्शन होता है।

ये है मुकेश रेडियम कार सीट कवर का रेडियम कार स्टीरियो ।

उम्म देखभाल यहां पर सब पार्ट्स की देखभाल कार खराब हो गई है तो सही --